मॉल के सामने डमी रखे हुए हैं।

मंदिर पर येलो और रेड कलर किया हुआ है।

उसमें बच्चे का रेड कलर का डंगरी वाला ड्रेस टंगा हुआ है।

ट्रेक्टर पर ब्लू और व्हाइट कलर किया हुआ है।

और वहां से बाद बादल दिखाई दे रहे हैं।

एक आदमी ने ब्लैक कलर की शर्ट पह--

रोड पर एक वाइट कलर का एरोप्लेन खड़ा है।

एक कपड़े की शॉप दिखाई दे रही है शॉप पर रेड और पीले कलर --

वहीं पर एक ब्लैक कलर का बेग रखा हुआ है।

उसी गार्डन में पिंक कलर के फूल लगे हैं।

उसी मकान में क्रीम कलर का बेड रखा हुआ है।

उस शोरूम पर रेड कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

एक गार्डन दिखाई दे रहा है।

गार्डन के साइड में चद्दरो की दीवार बनी हुई है।

व्हाइट कलर के फूल लगे हुए हैं।

एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है स्विमिंग पूल में एक येलो कलर का डंडा लगा हुआ है।

सामने एक मकान दिखाई दे रहा है।

नदी में लकड़ी से बनी हुई नाव चल रही है।

कत्थई शर्ट में आदमी खड़ा हैं।

सामने एक एकेडमी दिखाई दे रही हैं।

गेट दिखाई दे रहे हैं वहां पर--

सामने एक बड़ा सा मॉल दिखाई दे रहा है।